इसमें अलग अलग तरीके की फिश है जैसे--

यह कोई मार्केट का फोटो है जहां पर बहोत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं जीसमें बहोत सारी बाइक्स वगैरा--

फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं जिसमें शायद मिल्क को फिल्टर किया जा रहा हैं जिसमें अलग-अलग तरीके की मशीनरी --

इसमें बहुत सारी गायों को पाला गया और एक बहुत बड़ा गोशाला दिख रहा है जिसमें--

ऊपर पंखे भी लगाए गए हैं ताकि गायों को गर्मी ना लगे।